यह किसी स्टेडियम का चित्र है।

उस पे चढ़ने के लिए लकड़ी की एक छोटी सी सीढ़ी है।

अगल बगल में हरे हरे घास नजर आ रहे हैं।

एक व्यक्ति इधर खंबे के पास खड़ा नजर आ रहा है।

यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

सामने वाल वॉच भी लगा हुआ है।

लोहे का रेलिंग बना हुआ है।

बाहर में दो ब्लू कलर की कार एक सफेद रंग की कार खड़ी है।

बगल में खेत में हरे हरे धान लगे हुए हैं।

पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

काउंटर के ऊपर में कुछ पेपर भी रखा हुआ है।

एक साइकल की दुकान का चित्र है जहां पे छोटे और बड़े बच्चों के लिए ढेर सारी साइकिलें रखी हुई हैं।

एक साइड के वॉल पे स्विच बोर्ड नजर आ रहा है।

छत पे सीलिंग लाइट जल रही है और वायरिंग की पाइप भी नजर आ रही है।

एक स्कूटी भी दिखाई दे रहा है।

स्कूटी के पीछे एक बिल्डिंग है जो सफेद रंग की है।

अमने से कुछ तारे गुजरती हुई नजर आ रही है।

और नीचे में एक स्टील की रेलिंग लगी है।

दो टीचर है जिन्होंने ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी है और हैंडबैग कंधे पे टंगा हुआ है।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

पेशेंट के लिए लोहे का एक बेड रखा है।